बहोत लोग माक्स पहने हुए हैं और स्मिर्ति के ऊपर फूल चढ़ा रहे --

यह एक पेड़ है पेड़ के अलग बलग में बहोत सारे हाथी है घास भूसे हैं और खजूर का पेड़ भी है ।

ये पेड़ के ऊपर लाइट लगा हुआ है जो दिखने में काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है और अलग-बलग में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं जैसे लगता है टयोरिस्ट हैं ये सब अपना सामान लेके बैठे हुए हैं ।

यहाँ पे शादी हो रहा है और बीच में चार पांच टेबुल लगा हुआ है जो खाना खा रहे हैं जैसे बुफर सिस्टम होता है। खाना लेके बैठ के खा रहे हैं।